यह एक बस स्टॉप है।

यह एक तंबू गढ़ा हुआ पैलेस है।

और ईटो से बनी हुई आकृति दिखाई दे रहे--

यह संस्कृतिक स्कूल है।

गमले रखे हुए ट्रॉफी रखी हुई है।

यह एक घर है जिसमें बहुत सारा सामान रखा है गत्ते की पत्तियां रखी हुई हैं।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

बहुत सारी किताबें रखी हुई है ब्लैक कलर की कुर्सी रखी हुई है।

दो स्प्रे की बोतल रखी हुई व्हाइट कलर की।

और कागज से कर तीन पेटिंग टंगी हुई हैं।

क्रिसमस डे का फंक्शन है। सभी ने रेड कलर की कैप ओढ़ रखी है। ग्रीन कलर का मैट बिछाया है।

और रेड कलर में एक अलमारी सी दिखाई दे रही है।

यह एक दवाई का स्टोर है जिसमें बहोत सारी दवाई और कुछ कॉस्मेटिक समान रखा हुआ है।

लोहे के पाइप से कुछ आकृति बनी हुई है। जिसपर दो बच्चे चढ़ गए।

किरन दिखाई दे रही है और ये दो कंच की लाइट भी दिखाई--

और फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं चेयर दिखाई दे रही है गिलास दिखाई--

बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं दो लड़कियां कैंडल लेके जा रही है और पंडित दिखाई दे रहा है।

जिस में सोफे दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी दिखाई दे रही है बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रही हैं ब्लू कलर का आसमा।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है मन की बात। टॉवर दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी दिखाई दे रहे है कुछ औरत दिखाई दे रही है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है पर्दा दिखाई दे--

पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिसपे कुछ पहिए से दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मिठाई की शॉप है जिसमें बहुत सारी मिठाई रखी हुई है।